यहाँ पीछे एक इमारत बनी हुई है और यहाँ काफ़ी पेड़ दिख रहे हैं कुछ घाँसे बनी हैं। यहाँ एक मैन हैं जो अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ दिन का टाइम है।

यहां पर यह पानी भरा है जहां पर व्हाइट पॉलिथीन पड़ी है।

यहाँ बड़े-बड़े पेड़ भी है और यहाँ पर जो बिल्डिंग है। रेड लाइट --

यहाँ पर ये घर बने हुए हैं जो लगभग पूरे सेम दिख रहे हैं।